formatting course material in moodle पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगेः
यह tutorial
हालांकि internet explorer का उपयोग न करें क्योंकि यह कुछ प्रदर्शन विसंगतियों का कारण बनता है
इस tutorial के अनुसार आपके site administrator ने एक moodle वेबसाइट सेटअप की है और आपको teacher के रूप में पंजीकृत किया है
इस tutorial के शिक्षार्थियों के पास moodle में teacher login होना चाहिए कम से कम administrator द्वारा एक कोर्स उन्हें असाइन किया गया हो कुछ कोर्स सामग्री उनके संबंधित कोर्स के लिए अपलोड की गई हो
यदि नहीं तो कृपया इस website पर संबंधित moodle tutorials देखें
browser पर जाएँ और अपना moodle site खोलें
अपने teacher username और password विवरण से login करें
अब हम teacher dashboard में हैं
बाईं ओर navigation menu में my courses में calculus पर ध्यान दें
calculus course पर click करें
हमने पहले ही announcements और कुछ सामान्य course विवरण जोड़ दिए हैं
add हम कुछ अतिरिक्त course सामाग्री जोड़ेंगे
moodle में सभी course सामाग्री resources कहलाती हैं
resources आंतरिक जैसे lecture notes किताबें या बाहरी जैसे wikipedia links हो सकते हैं
शुरू करते हैं पेज के शीर्ष दाईं ओर पर gear आइकन पर क्लिक करें और फिर turn editing on पर क्लिक करें
ध्यान दें कि आपको course में कोई भी बदलाव करने के लिए editing on करना होगा
basic calculus section के ऊपरी दाईं ओर पर add an activity or resource link पर click करें
resources की सूची के साथ popअप खुलता है
नीचे scroll करें और सूची से page चुनें जब आप किसी भी resource का चयन करते हैं तो दाईं ओर पर resource के बारे में विस्तृत विवरण पढ़ें
popअप screen के नीचे add button पर click करें
name field में मैं lecture 1 notes type करूंगी
फिर description box में involutes and construction of involute of circle type करें
display description on course page option check करें
page content box देखने के लिए नीचे scroll करें basiccalculusinvolutes odt file से टैक्स्ट copy और paste करें
हम बाद के चरण में फोटो अपलोड करेंगे यह फाइल इस tutorial के code files link में उपलब्ध है
आइए अब इस टैक्स्ट को format करें menu widgets विस्तृत करने के लिए editor के ऊपर बाईं ओर पर downarrow पर click करें
जैसा कि दिखाया गया है मैं शीर्षकों को अधिक विशिष्ट बनाऊंगी
text editor में options किसी any मानक text editor के समान हैं यहां हम bold italics unordered और ordered lists जैसे options देख सकते हैं
हम hyperlink और unlink text के लिए options भी देखते हैं
यहाँ image जोडने का भी एक option है figure 1 shows the involute of a circle टैक्स्ट के बाद image लगाते हैं
image के लिए जगह बनाने के लिए enter दबाएँ इसके बाद image icon पर click करें
image properties window प्रदर्शित होता है यदि आप external image प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ image का url प्रविष्ट कर सकते हैं
मैं image को upload करने के लिएbrowse repositories button पर click करूँगी
file picker टाइटल के साथ एक popअप window खुलती है
upload a file पर click करें फिर choose file या browse button पर click करें और अपनी machine से file चुनें
यह image code files link में भी उपलब्ध है आप इसे download और उपयोग कर सकते हैं
upload this file button पर click करें
हम विवरण type करेंगे this is the involute of a circle
अन्त में image प्रविष्ट करने के लिए save image button पर click करें
अगला option media को जोड़ने के लिए है यह एक url video या audio file हो सकती है फिर से यह एक external url हो सकता है या हमारी machine से uploaded किया जा सकता है
अगला option manage files है इस पर click करें
manage files option में उन files का एक set होता है जिन्हें आप store और प्रदर्शित करना चाहते हैं इसमें assignment submissions resource files आदि शामिल हो सकते हैं
वे इस course में किसी भी any resource द्वारा उपयोग किये जा सकते हैं ध्यान they कि हमने अभी जो image uploaded की है वह भी यहां मौजूद है
इस popअप box के बाईं ओर 3 icons हैं
पहला file picker है इस पर click करें
इसमें server files recent filesआदि को देखने के options हैं server files वे files हैं जिनका course में कहीं और इस्तेमाल किया गया है और उनका पुन: उपयोग किया जा सकता है
मैं x icon पर क्लिक करके इसे अभी के लिए बंद कर दूंगी
फिर हम create folder icon पर click करेंगे जो कि दूसरा icon है
new folder name field में assignments type करें
फिर इसे खोलने के लिए assignments folder पर click करें
मैं assignments folder के अंदर अपनी file drag करती हूँ
अब उस file पर click करें जिसे अभी uploaded किया गया था
इस popअप में फ़ाइल name और लेखक को एडिट करने का option है और file को download या डिलीट भी कर सकते हैं
मैं कुछ भी नहीं बदलना चाहती हूँ इसलिए मैं popअप के नीचे cancel button पर click करूँगी
अब tutorial रोकें और यह छोटा now नियतकार्य है:
3 files upload करें आप उन्हें इस tutorial के code files link में पाएंगे
इस assignment को पूरा करने के बाद इस tutorial को फिर से शुरू करें
आपके file manager में अब assignments और reference material named 2 folders होने चाहिए
और involutesimg1 png named एक अन्य file
ऊपरी दाएँ कोने पर x icon पर क्लिक करके popअप window बंद करें
formatting options का अगला set है
align और indent options इनका अनुसरण करते हैं ये किसी any text editor की तरह काम करते हैं
आइए जानें कि अगले option का उपयोग कैसे करें जो कि equation editor है
मैं इस वाक्य को एक समीकरण के साथ जोड़ना चाहती हूं तो मैं equation editor icon पर click करूँगी फिर समीकरण type करने के लिए equation editor का उपयोग करूँगी
समीकरणों को type करने के लिए latex का उपयोग कैसे करें इसके बारे में विवरण additional reading material link में हैं पूरा होने पर save equation button पर click करें
insert character insert table और clear formatting options किसी any text editor जैसे ही काम करते हैं
अगले दो options हैं undo और redo ये the इनेबल होते हैं जब कुछ अनसेव टैक्स्ट होते हैं
इसके बाद हमारे पास accessibility के लिए 2 options हैं पहले icon को accessibility checker कहते हैं दूसरा screen reader helper है
accessible websites और इन options के बारे में विवरण additional reading material link में हैं
अंतिम option editor view से html code view तक toggle करना है इसका उपयोग images वीडियो पीपीटी interactive कंटेंट आदि को embed करने के लिए किया जा सकता है
फिर से toggle html पर click करें यह हमें सामान्य editor view पर वापस लाएगा
मैंने इस प्रस्तुति के लिए bold italics और list options का उपयोग करके टैक्स्ट को formatted किया है इसी तरह आपके कंटेंट के लिए करें
जब आप formatting पूरा कर when तो नीचे scroll करें और save and display button पर click करें
अब हम moodle से logout कर सकते हैं
इसी तरह छात्र priya sinha इस पेज को देखेगी
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
यहाँ आपके लिए अन्य नियतकार्य है
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएँ आयोजित करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया समय के साथ अपने प्रश्नों को इस forum में post करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस mission पर अधिक जानकारी दिखाई गई link पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद